एक हाथ में अशोक चक्र पकड़े हैं।

और बिल्डिंग के अंदर में --

और भी बहोत सारे बच्चों के कपड़े--

ये बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

खुला मैदान दिखाई दे--

बिल्डिंग है जिसमे--

इसको सिर्फ़ उर्दू पढ़ने वाले ही समझ सकते हैं ।

आठवीं बेस्ट मोर सीबीएससी कोर्सेस

ऐसा बैनर लगा हुआ है यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा हैं ।